यहां पर बहुत सी महिलाएं व एक व्यक्ति दिख रहा है।

और यहां पर पीछे भी बहुत से व्यक्ति खड़े हुए बातचीत कर रहे हैं।

और सामने एक बाइक भी दिख रही है।

यहां पर बहुत से आदमी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं।

और कुछ आदमी खड़े हुए हैं।

यह एक शॉपिंग मॉल लग रहा है।

जहां पर बहुत से कपड़े टंग रहे हैं।

और ऊपर बहुत सी लाइट जल रही है।

यहां पर बहुत बड़ा सजावटी--

गेट लगा हुआ है और बहुत से व्यक्ति बैठे हुए हैं।

यह एक मकान का चित्र लग रहा है।

बाइक और साइकिल भी खड़ी हुई है।

और आगे बहुत से सजावटी पर्दे भी लगे हुए हैं।

और ऊपर बहुत सी लाइट भी लग रही है।

और सामने एक खिड़की दिख रही है।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

और पीछे बहुत से पेड़ लगे हुए हैं।

और ऊपर लाइट भी जल रही हैं।